और अथी आर हउ ए.सी. उसी हउ। ई सब मिल लउ हे एजा टी.वी. उवी भी मिल लउ एजा तो जादे वाशिंग मशीन डबल डेकर वाला फ्रीज उरिज भी दिख रहलै अ बहुत सारा बढ़िया फ्लैट दिख रहलै सब। सब अलग-अलग कंपनी के --

जय श्री साईं राम। ई लगे हो साईं बाबा के मंदिर हो साईं बाबा का जे हई ना आज तक नै पता कर पैलई की हिन्दू है की मुसलमान हलइ साईं बाबा।

या बहुत बच्चा से पढ़े लिखे है प्लस --

यह मंदिर हो। ओकर गेट के बाहर ई लड़का सेल्फी ले रहले ह। हरा कलर के टी-शर्ट पेन्ह के गोल गला और बाल पूरा खड़ा-खड़ा है। हिड़ब्बा नियर बाल कटैले हई छौड़ा लग रहलै है हिड़ब्बा नियर।